जिसमें अलग अलग कलर के बहुत सारे पंखे रखे हुए हैं।

और इनके नीचे कुछ कागजों पर लिखा हुआ है।

और यह एक नहर है जिसमें एक नाव खड़ी हुई हैं।

यह एक सुंदर सी दुकान है जिसमें फरीज बैड और वाशिंग मशीन भी रखी हुई है।

यह एक सुंदर सा पार्क है जिसकी दीवारों पर बहोत सारी पेंटिंग बनवाई गई हुई है और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई है।

इस घर में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और हरे भरे घास भी हैं।

और रेड कलर का पेप्सी की बोतलों का डब्बा भी है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह माता शेरावाली की तस्वीरों की दुकान है।

यहां एक सुंदर सी मेज है जिस पर तीन व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं।

और एक व्यक्ति थैला लेकर जा रहा हैं।

और हरे भरे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

बहुत सारे व्यक्ति पूजा में लगे हुए है।